गाय दिख रही है यहाँ मूर्ति दिख रही है यहाँ शंकर भगवान दिख रहे हैं सफेद कलर दिख रहा है ऑरेंज कलर दिख रहा है।

ऑरेंज कलर दिख रहा है जमीन दिख रही है यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है।

स्कूल की ड्रेस दिखाई दे रही है घास-फूस दिखाई दे रहा है बच्चा भाग रहे हैं।

बालाजी सेल्स लिखा हुआ है लाइट जल रही है।

काँच दिखाई दे रहा है लाल कलर दिखाई दे रहा है सफेद कलर --

सफेद कलर देखा दिखाई दे रहा है काला कलर दिखाई दे रहा है हरा कलर दिख रहा है।

पेड़ दिखाई दे रहै है हरा कलर दिखाई दे रहा है समीर लिखा हुआ है कांच दिखाई दे रहा है।

जमीन दिखाई दे रही है हरा कलर दिखाई दे रहा है पेड़ दिख रहा --

बिल्डिंग दिखाई दे रही है हरा पीला कलर दिख रहा है हरा कलर दिख रहा है जमीन दिख रही--

इंसान दिखाई दे रहा है हरा कलर दिखाई दे रहा है लाल कलर दिखाई दे रहा है सफेद दिखाई दे रहा है।

हरा कलर दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर दिखाई दे रहै हैं नीला कलर दिखाई दे रहा है।

सफेद कलर दिखाई दे रहा है हरा कलर दिखाई दे रहा है।

पीला कलर दिखाई दे रहा है ब्रेंच दिखाई दे रहै हैं टेबल दिखाई दे रहा है हरा कलर दिखाई दे रहा है।